यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग हो रही है चेयर्स है बहुत बड़े बड़े--

और दो तीन अँ जेंट्स बैठे हैं| रेड कलर की चेयर पे और ज़ीने हैं और एक व्हाइट कलर की ड्रेस में फादर बैठे हैं।

ये एक गार्डन है जहाँ पर येल्लो कलर की बाउंडरी बनी हुई है और येल्लो कलर के फ्लोवर्स हैं इसमे सनफ़्लोवर्स हैं।

और पर्दा लगा है व्हाइट कलर का एक ब्लैक क कलर का गेट है और एक इसमे मेन है जो की व्हाइट कलर के कपड़े पहना है और वो जा रहा है इस टाइप --

एण्ड ग्रीन कलर के बहुत सारे पेड़ है और रेड कलर का कुछ बिछा हुआ है स्टम्प लगे हुए है।

और अंदर कुछ टेम्पल टाइप का बना हुआ है स्मॉल टेम्पल वगैरह।

ये एक नदी है छोटी जहाँ जिसके आस पास बहुत सारे पेड़ पोधे बने हुए है।

ये एक टेम्पल है वाइट कलर का जिस पे ग्रीन कलर के बोहोत कुछ ग्रीन कलर से भी है और--

भगवान जी बने हुऐ है इसकी वाल पर और--